और ये पार्क है और यह बहुत ही सुन्दर पार्क है और यहां पर बगल में बैठने उठने वाला भी दिया गया है और इधर चारों बगल से नारियल गाछ लिखल अ अ दिया हुआ है और यह बहुत ही पतला और बहुत ही सुन्दर है और अच्छा लग रहा।

--और ये आठ बज कर पांच ऑवर चौदह पांच ऑवर सोलह पांच ऑवर ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है और यहा पर एक बच्चा भी बैठा हुआ हैं।